और इधर बैक में बैक साइड में एक दरवाजा है फर्श है।

कलेंडर है कलेंडर में हनुमान जी का चित्र छपा हुआ है घड़ी है घड़ी में एक बज के कुछ मिनट हो रहे हैं बोटल रखा हुआ है.

आम का पेड़ है वहीं पे एक उजला कलर कि कार लगी हुई है और--

और पानी में भी वृक्ष दिख रहा है और आ आसमानी बा आसमानी रंग का आकाश दिख र--

एक रूम है रूम में इलेक्ट्रिक आयरन से एक व्यक्ती कपड़ा प्रेस कर रहा है.

छत के ऊपर टंकी है एक पीला कलर का है एक काला कलर का बगल में ट्रांसफार्मर --

बाइक के सीट का कलर भी ब्लैक ही है बाइक का जो चक्का है उसका रंग भी ब्लैक है.

बाइक जो फर्श पे खड़ा है वो फर्श गिला है।

ये एक दुकान है दुकान में तरह तरह के इलेक्ट्रीशियन सामान रखा हुआ है।

जाति निवास बनता है आधार कार्ड सुधरता है.

और खिड़की के नीचे बहुत सारे लोग है।

और दी फर्स है उजले कलर की दीवार उजले कलर की और खिड़की है और दीवाल में टाइल्स ल--

मस्जिद हरे रंग का है उसके ऊपर एक खम्भा ली-लगा हुआ है बगल में पेड़ है एक पोल है.

कहीं कहीं घास की रेत दिख रहा है।

मार्केट है मार्केट में बहुत सारा भीड़ है।

बहुत सारे जेंट्स हैं लेडीज हैं.

बहुत बड़ा पहाड़ है पहाड़ पर दो आदमी चढ़े हैं.

और इधर ख फिसलने वाला भी है उसका कलर पीला हैं.

और बाहर गमले में फूल है गुलदस्ता है गुलदस्ते फूल का रंग लाल उजला है.

एक खेल की मैदान जगह जगह हे वह बहुत बड़ा पेड़ हे एक --

इधर फर्श पर घास दिख रहा हे और उधर लड़-लड़की हे एक लड़का --

वृक्ष हे और पपीता भी हे पपीता मे फल लगा हुआ हे फल पक भी गया हे.

एक मकान हे मकान के छत फुस फास हे.